यह एक मैरिज हॉल है और बहोत कुछ बहोत सारा डेकोरेट किया गया है।

हरयाली दिख रही है बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ।